यहाँ चर्च में आये हुए है और लोग यहाँ पर पूजा कर रहे है उसका आनंद ले रहे है लोग।

ये एक अ पू कोई अ पूजा हो रही है| यहाँ पर एक मंदिर के परिसर में हो रही शायद यहाँ पर कोई फेस्टिवल चल रहा है।

एक विग्नेन बुक सेंटर स्टेशनरी है जहाँ पे होलसेल के बुकसेलर है बुक्स वगेरा मिलती है यहाँ पे पढाई की भी मिलती है और चीजों भी --

यह एक अ किसी अअ रोड का है रोड का या मंडी जैसा कोई रोड है।

यह एक आयुष बुक स्टोर के नाम से अअअ फोटो है जिसमें जोकि डी.ऐ.वि कॉलेज मार्केट आर्य समाज रोड मुज़्ज़फरनगर में है।

ये यहाँ पे एक अ इंडियन ये कैनरा बैंक का केनरा बैंक का अअ बिल्डिंग है और --

ये भी एक फूलों की दुकान है। जहां पर कुछ लोग फूल खरीद रहे हैं कुछ लोग फूल बेच रहे हैं और बोहोत भीड़ दिखाई दे रही हैं। ये फूलों की मार्केट है गेंदे का फूल हैं चमेली का फूल है। यहां पर हर तरह के फूल दिखाई दे रहे हैं इस फोटो में।

ये भी एक मछली की दुकान है यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है इसका दुकान का मालिक लग रहा है और वहाँ पर कुछ लोग मछली का मोल भाव कर रहे हैं खरीदने के लिए।

ये भी एक फूलों की दुकान है फूल और पत्तों की दुकान है जहाँ पर कुछ लोग फूल खरीद रहे हैं कुछ लोग पत्ते खरीद रहे हैं भेड़ बकरियों के खाने के लिए इस दुकान से ले रहे हैं।